नीले कलर के पाइप और फिरोजी कलर के पाइप लगे हुए हैं ये गार्डन है।

दिखाई दे रहे हरे कलर के और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ ऊपर आसमान नजर आ रहा है।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

ईद मे यहाँ पर ये लोग टोपी लगाए हुए हैं सफेद कलर की यहाँ सफेद कुर्ते और पैजामे मे एक आदमी --

दुकान दिखाई दे रही है और यहां पर सामने एक फ्रिज रखी हुई है यहां पर एक लकड़ी का शोकेस दिखाई दे रहा है यहां पर कांच की अलमारियां जैसी बनी हुई --

सामने एक कॉलेज दिखाई दे रहा है कॉलेज जैसी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारी बाइक और स्कूटी रखी हुई है यहाँ सामने एक पेड़ लगा हुआ है ये पेड़ का कलर का --

मैंने एक रथ दिखाई दे र अहा है यहाँ पर रंग बिरंगी लाइट जल रही हैं सामने घोड़े से दिखाई दे रहे हैं।

हैं यहाँ एक लेडीज है जिसके मुँह पर मास्क लगा हुआ है यहाँ पर कोई सी स्टेफ कर रहे हैं ये डांस क्लास लग रही है।